चित्र में मुझे रोड दिखाइ दे रही है।

चित्र में मुझे एक लड़का बैठा हुआ--

चित्र में मुझे कई वायरो के गठ्ठा दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे का नाम इंडियन फेवरिट फैमिली सैलून दिखाई--

चित्र में शॉप का नाम वैभव पैनल आइसक्रीम पार्लर --

दिख रहा है चित्र में ऑटो और गाड़ी खड़ी दिख रही--